हरे भरे मैदान में बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आ रहा --

गणेश भगवान की अर्चना में व्यस्त नजर आ रही यह महाराष्ट्र में --

यहां पर शरबत बनाने के लिए बोतल दिखाई दे रही --

कुर्सियां टेबल यहां पर बैठी नजर आ रही कुर्सियां काले कलर की दिख रही --

ज यहां एक बहुत ही अच्छा भवन नजर आ रहा है।

महाविद्यालय के अंदर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे --